और एक महिला और एक आदमी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में कसरत करने की जगह दिखाई दे रही है बहुत सारी महिलाएं और पुरुष है बहुत सारी मशीनें यहां पे रखी हुई है।

बीच में कुछ आदमी खड़े है गाड़ियों पे कुछ लोग बैठे हुए है।